यह रोड है रोड के बगल मे दुकाने हैं और आगे गमले रखे हुए हैं गमलों में--

पौधे लगे हुए हैं और आगे एक स्कूटी खड़ी हुई है आसमान व्हाइट कलर का दिख रहा है --